फूलों से ही छत बनाया हुआ है एवं वाइट फूल इसमें अत्यधिक उज किया गया है।

इसके बगल में कुछ ब्लू व्हाइट कलर के टैंट लगते हुए हमें दिख रहे है।

यह एक संगीत प्रोग्राम का दृश्य है।

बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसका कलर व्हाइट है एवं एक कार भी खड़ी है एवं बगल में फूलों का बगीचा लग--

एक व्यक्ति लोहे के रॉड काटते हुए दिखाई दे रही है।

दूसरे व्यक्ति की गेट तैयार करते हुए दिखाई दे रहे--

यह कंप्यूटर क्लास के बाहरी का दृश्य है।

बाहर में एक महिला अपने चेहरे को ढके हुए कुर्सी पर बैठी है एव--

पहाड़ों पर से पानिया तालाब में आती हुई दिख रही जिसे हम झरने के रूप में देख सकते हैं।

पशुओं के लिए बहोत सारी दवायें एवं उपहार रखे हुए हैं।

जिसके दीवारों पर पेपर प्लास्टर का काम चल रहा है एवन वायरिंग भी हुई है एवन हमें देखने को मिल रहा है कि एक बॉल जल रहा है।

एक बोर्ड नीचे की ओर है।

बगल में एक व्हाइट शूज भी दिखाई दे रहा है।

इ इस बिल्डिंग का रंग व्हाइट है एवं गेट ब्लू है जहां पर एक व्यक्ति हाथों में कागज लिए खड़े हैं।

जो ब्लू एवं रेड शर्ट पहने हुए हैं।

लेफ्ट साइड में सुभ एवं राइट साइड में लाभ लिखा--

यहां पर एक व्यक्ति पेन लिए हुए खड़े हैं।

जिनमें दो व्यक्ति व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

प्लास्टर को तोड़ने के लिए इन्होंने लकड़ी की काम पे सपोर्ट के लिए रखी हुई।

सामने साइकिल भी हमें दिख रहा--

इसके बगल में स्टील का बहुत सारा समान दिख रही है।

यह एक बाइक गेरेज का दृश्य है।

उसके बाहर हमें एक लाल कार दिखाई दे रही है।

जो लाल जैकेट एवं लाल पैंट पहनकर खड़े हैं एवं एलो हेलमेट लगाए हुए हैं।

कपड़ा का दुकान है जिसमे अलग अलग रंग के कपड़े सजा के रखे हुए है।

यह एक बुक स्टोर का दृश्य--

दो चेयर दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारी लेडिस कपड़े रखें हुए हैं जिनका रंग गुलाबी येलो एवं रेड है।